यहाँ एक टायर की दुकान है। जहाँ पे बहोत ढेर सारे टायर दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ तस्वीर किसी सरकारी कार्यालय जैसे लग रहा है जहा पे एक --

जहाज का कलर सफ़ेद रंग का है जैसे कि जहाज उड़ने वाली हो।

जहा पे दो आदमी दिखाई दे रहे हैं।

योगा कर रही हैं और आगे एक मैंडम भी दिखाई दे रही है जो योगा सीखा रही है।

यह तस्वीर किसी कपड़े की दुकान --

यह एक हॉस्पिटल की तस्वीर दिखाई दे रही है जहां पे एक नर --

बैंगनी कलर का दिखाई दे रहा है।